यहां पे कोभी है और लहसन यहां पे और यहां पे गाजर प्याज --

और यहाँ पे ब्लैक कलर का चेयर्स है।

यहाँ पे बहोत सारे चेयर्स भी लगे हुए हैं सामने में फील्ड जैसे थोड़ा-सा जगह खाली है वहा पे घास दिख रही है हरा-हर बहोत --

यहाँ पे एक ट्रेन दिखाई दे रही है।